और एक अदमी देख रहा है उसको और बाजू में बांग्ला है।

और एक भाई अपना सेल्फी ले रहे हैं।

गाड़ी पार्किंग है और इधर सब गाड़ी पार्किंग की है।

एक ये मंदिर है मंदिर में हवन करने का वो है।

झाड़ है नकली झाड़ी की असली झाड़ी वो नहीं पता।

और इधर घर है। एक घर गांव में।